ना जाने कितने बहुत-बहुत बड़ा दुकान है और रंग भरे हैं।

ओकाश का रंग नीला है उसमे कई --

इस जगह पे एक बड़ा-सा पार्क है।

यह कुर्सियां बहुत ज्यादा बिकती हैं और यह दू --

इसमें बहुत तरह का सामान बिक्री हो रहा है । यह मानव लोग इस जगह पे भीड़ लगइले हुए है ।

इस जगह पर एक छोटा सा पार्क है।